हलो गाइस देख पा रहे है की ये ओवर ब्रिज है ब्रिज के नीचे ऑटो भी खड़े है और उसके नीचे एक मैन रोड है कितनी सुंदर सनशाइन का समय है जो देखने में मन मोह लेता है देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है ऑटो मतलब जा रहे है इधर उधर देखने में बहुत ही मजे लग रहे है।

कितनी सुन्दर मन मोह रहा है देखिये देखने में कितनी सुन्दर लग रहा है।

हेलो गाइस आप देख रहे है कि कुछ आदमी यहाँ पर-- .

ब्रिज है ब्रिज के आस-पास काफी लोग खड़े हैं ट्रेन कोई ट्रेन --